लोग जाते हैं तेल डालते हैं।

और किताब पढ़ने से उसका --

भारत का बहुत ये महत्वपूर्ण त्यौहार है।

यहाँ बहोत बड़ा एक ठो दुकान है दुकान में --

इसलिए भी मारते हैं व्यापारी भी करता हैं।

पैसा वाला आमिर जो लोग हो --

और जो मन्नत मांगते है उसका --

ऐसा बिल्डिंग हम लोग भी बनाना चाहते हैं मगर क्या करे हम लोग का --

मॉल के जैसा और बहुत बढ़िया-बढ़िया सुंदर --

में जाते है और गर्मी के भी दिन में भी जाते है।

दिल्ली पंजाब बम्बई सब जाते है।

इससे चोरी चमारी नहीं होता है।

देखने के लिए और यह बुद्ध भगवान है।

बल्ब उल्ब भी जलता है और एक्सरसाइज करने से --

अब उसका जो अंदर में जो बीमारी है --

बच्चों से ले के बड़े का भी कपड़ा है और --

जाड़ के टेम में और गर्मी के भी टेम में --